यह फोटो किसी मैदान या गार्डन से ली गई है जैसे कोई छोटा पार्क हो और उसे पार्क में घास है पेड़ है लोग पेड की छांव में लेटे हुए हैं।

पानी के पीछे पहाड़ है पहाड़ अद्भुत खुला आसमान है।